और एक पेड़ भी है। दीवाल सफेद है। ऊपर बाल टंगा हुआ है।

इन्होंने साड़ी बांधी हुई है और मुंह पे मास्क लगाया हुआ है।